और इस पे एक बोर्ड लगा हुआ है सामने उस पे सभी प्रकार के सामान उतर रहे हैं।

अउर ये लड़के और लड़ लड़कियां काफी अगल अलग अलग कपड़े पहने हैं।

यहां पर ये एक ऑफिस है और इसमें चार जने बैठकर अपने कार्य कर रहे हैं।

ये एक चाय पत्ती का खेत है। यहां पर बहुत बड़ा रोड जार रस्ता जा रहा है। ये कच्ची सड़क एक --

और ये नजारा बहोत ही अच्छा सुंदर लग रहा है देखने में।

ये एक कमरा है इस कमरे में वाइट कलर हुआ है सारे में सामने तीन पेंटिंग टंगी हुई है एक पेंटिंग हरे कलर की--

ये एक पानी का पूल है जिसमे टंकी लगी हुई है।